अः जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर --

यह एक मिनी मॉल है।

यह कोई पुराना बिल्डिंग या हॉस्टल जैसा लग रहा है।

यह एक ऑडिटोरियम के जैसा लग रहा है।

और ये ऑडिटोरियम काफी अच्छा से डेकोरेट किया गया है।

जिसमे बहुत सारे सिख लोग--

गुरुद्वारे की सुंदरता काफी अच्छी है।

यह एक बहुत लोगों का मठ जैसा लग रहा है।

यह एक पेट्रोल पम्प है।

कुछ कस्टमर भी पेट्रोल ले रहे हैं।

हो सकता है यहां कोई घाट है।

जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है।

किसी लीडर का घर लग रहा है।

ये किसी रेस्टोरेंट का पिक्चर है।

और बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं।

जिसपे एक मोर का मूर्ति लगा हुआ है।

जिसमें काफी ज्यादा सीट अवेलेबल है।